खाली जगह है एक घर दिखाई दे रहा है ये सब जगह पहाड़ है और धुंदला- धुंदला दिखाई दे रहा है सब जगह पेड़ -पौधे दिखाई दे रहॆ हैं।

लेडीज के लिए भी कपड़ा मिलता है जेंट्स के लिए भी कपड़ा मिलता है यहाँ हर प्रकार के कपडे मिलते है जैसा लेना चाहे वैसा कपड़ा मिलता है।

सिटीजन सर्विस सेंटर जूनल ऑफिस है यहाँ पे लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आ रहे हैं यहां पे महिला ने बच्चे को पकड़ के आई हुई है यहाँ पे बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है सीढ़ी बना हुआ है।

और बीच में मैदान है इसमें किनारे में गार्डनिंग भी किया गया है यहाँ नारियल के पेड़ भी है आसमान है।

दो लोग है जो पकड़ के कलर कर रहे है वाइट कलर में पोताई कर रहे है बाल्टी में कलर को रखा गया है और अगल -बगल में भी बिल्डिंगे है बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे है।

यहाँ पे एक मंदिर है मंदिर को बहुत यूनिक तरीके से डेकोरेट किया गया है ग्रीन कलर के और ऑरेंज कलर के पिंक कलर के वाइट कलर के फूल से सज़ाया गया है।

दरवाज़ें है यहाँ पे लिफ्ट लगा रहे है यहाँ पे खाली बरान्दा भी है यहाँ पे जे.सी.बी. है जो खुदाई कर रहा हैं ।